यहाँ दुकान मे वीवो का मोबाईल रखा हुआ है और नीचे लिखा हुआ है जिओ फोन और जिओ फोन का फोटो दिख रहा है।

और यहाँ जो नाचने वाले होते है नचनिया बोलते है वह लोग यहाँ पस नाच रहे है तो मस्त नजारा दिखने आ गया दिख दिखा मेरे को बहुत मजा आ गया --

ये कपड़े की दुकान है यहाँ स्वेटर दिखाया जा रहा हैं देख सकते है।

कोई दुकान है नहीं एटीएम है देख सकते हैकोईँ बैंक का एटीएम है बैंक भी है यहाँ पैसा निकले आते है यहाँ पर--

यह रेलवे स्टेशन है यहाँ पास तीन कुत्ते दिखाई दे रहे है एक आदमी दिख रहा है और उधर और आदमी है और एक किराना दुकान दिख रहा है और --

बुलेट वाला है दिख रहा है और एक आदमी खड़ा है और किसी का बैरन लगा हुआ है चस्मा कोई होरी या कोई होगा देख सकते है बहुत अच्छा लु दिख रहा है ।

वो वाला देख सकते है बाल काटने का पानी वगेरा डब्बा मे रखा जाता है देख सकते है यहाँ पर और सीसा वगेरा लगा है बाल काटने वाले दुकान मे अच्छा लग लग रहा है।

यह गंगा नदी होगा इसमें दो लोग दिखाई दे रहे है उधर नाव दिख रहा है और सूरज उग रहा है सुबह का समय है और जंगल वगैरह दिख रहा है पेड़-पौधा --